ब्लैकेन वाइट शहर दिखाई दे रहा है आसमान ब्लू कलर में देख रहा है और पेड़ भी दिखाई दे रहें ।

विल है बहुत सारा सामान है चैन चाबी गुच्छे बहुत सारा सामान रखा हुआ है लाइटे जल रही है और व्यक्ति दिख --